यहां पे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

मॉनिटर भी दिखाई दे रहा है।

आगे में एक बैनर लगाके दिखाई दे रहा है।

रूम मे रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।

एक रेड कलर का तावल भी दिखाई दे रहा है।

मे बहोत सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहुत सारा शीशा ग्लास दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा स्ट्रा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक रस्ता दिखाई दे रहा है।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

रूम का अंदर में एक कार दिखाई दे रहा है।

दो लाइट बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

दो सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।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

पीछे में एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है।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

दुकान के आगे में एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे मे बहुत सारा बाइक दिखाई दे रहा है।

रस्ता में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

आगे मे बहोत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

मो मोबाइल का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पानी दिखाई दे रहा है।

पानी में दो बफेलो दिखाई दे रहा है।